ये एक दुकान दिखाई दे रही है दुकान के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा गया है एस_एस नेचुरल और उसका--

सामने रोड दिखाई दे रहा हैं और रोड पर आटो --

और एक बर्तन भी रखा हुआ है दुकान के सामने बहुत से--